यहां पर बहोत ही सारा बर्फ दिखाई दे रहा है।

वहां पर एक लोहे की गेट जैसा कुछ दिख रहा है ।

यहां पर एक बड़ी विंडो जैसे कुछ दिख रही है।

यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं।

यहां पर दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृति बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पाइप जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ गाड़ियां पार्क की हुई दिख रही है।

यहां पर बहोत सारी सुंदर सुंदर लाइट्स लगी दिख रही हैं।

यह एक मछली का बाजार दिख रहा है।

जो एक सुंदर घर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर अलग अलग लाइट्स लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ढोलक दिख रहे हैं।

पुरुष अपने सिर पे कुछ लगा रखे हैं।

यहां पर राजश्री ब्यूटीफुल लिविंग सॉल्यूशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ आग बुझाने का यंत्र दिखाई दे रहा है।

एक लोहे की पोल दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए दिख रहे हैं।

वहां पर कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर माइक दिख रहा है।

व्हाइट कलर की दिवाले दिख रही है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वहां पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं।

यहां पर सुंदर सुंदर पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी खाली जमीन दिख रही है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दिवाल पर औरते और बच्चों की तस्वीरें बनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे टेबल चेयर लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए दिख रहे हैं।